ये प्ले स्टेशन की दुकान है।

इस चित्र में एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

जिस पर कई सारी लाइटें लगाई गई हैं।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

इस चित्र में काफी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

सभी ने स्वेटर या शॉल पहना है।

कहीं कहीं की जमीन पर मिट्टी दिख रही है।

कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं।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

दुकान के बाहर माल लगी है।

दो एडजर्स फैन दिखाई दे रहे हैं।

एक सफेद रंग की प्लेट दिख रही है।

हरे रंग की जाली नजर आ रही है।

इस चित्र में एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है जो होमियोपैथिक डॉक्टर का है एक कुर्सी रखी हुई है।

सामने एक लोहे की खिड़की दिख रही है।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

कुछ पेड़ों में हमें सफेद और पीले फूल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक कॉलेज दिखाई दे रहा है।

जिस पर लाल लाइट जल रही है।

इस चित्र में एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

इस चित्र में वैदिक चिकित्सा दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक सींदरी लगी है जिसमें दो बंदूकें दिख रही हैं।